सामने हमें एक गाँधी जी का स्टेचू दिखाई दे रहा है जो लाठी रखे है और उनके पीछे की ओर बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है जो मतलब के है।

अलग अलग रंग के दिखाई दे रहे है और बिंदी भी दिखाई दे रहे है उसके पीछे का पर्दा नीले रंग का दिखाई दे रहा है और यहा पर बहोत सारे खिलौने भी दिखाई दे रहे है।

सामने हमें एक डेली नीड्स की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पर --

कई प्रकार के बर्फी सोनपापड़ी और खाने की सामाने रखी हुई है और दो चेयर भी रखी हुई है और एक बैठने वाला भी रखा हुआ है एक व्यक्ति भी है।